यहां पर बहुत सारी मुर्गियां पिजड़े में बंद है।

यहां पर एक सीढ़ी बनाया हुआ है सामने घास और पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

यहां पर दरवाजा दिख रहा है।

यहां पर पंखा लगाया हुआ है।

बांस पर बहुत सारे लोग चढ़े हुए हैं।

यहां पर एक लाइट जल रहा है।

यह पर बोर्ड टाइप का लगाया हुआ है।

घर में टंकी दिख रहा है और पाइप दिख रहा है।

बहुत सारे टावर भी दिख रहे हैं।

यह एक पार्क है यहां पर एक आदमी खड़ा है जो की लाल रंग का जूता पहना हुआ है और नीले रंग का शर्ट पहना हुआ है और काले रंग का जींस पहना हुआ है।

बहुत सारे पंखे लगे हुए हैं पंखे का रंग सफेद है।

यहां पर बहुत सारे पर्दे लगाए गए हैं।

यहां पर बाहर लिखा हुआ है संपर्क करें अपना हार्डवेयर स्टोर ।

यहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे है।

यहां पर एक पौधे की पत्ती दिख रही है।

बहुत सारे आदमी दिख रहे हैं सामने बहुत सारे साइकल लगाया हुआ है।

स्कूल का रंग सफेद और लाल है।

यहां पे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं।

यहीं पे बहुत सारे पोस्टर छपे हैं।

यहां पर फूलों से सजाया हुआ है।

सामने आदमी दिख रहे हैं।